इधर छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं बहुत सारे घास दिख रहे हैं।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

कुछ बैठे वाला बनाया हुआ है जिसपे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग खड़ा है।

इस चित्र में एक होटल दिख रहा है जिसमें एक घर दिख रहा है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा कॉलेज दिख रहा है जिस के आगे एक बहुत ही बड़ा गेट लगा हुआ है।

बहुत सारे मर्दाने लोग और बच्चे लोग हैं और कुर्सियां लगी हुई है।

वार को बहुत ही खूबसूरत सजाया हुआ है।

लंबे लंबे हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

व्हाइट रंग की लाइटें जल रहा है।

एक आदमी दिख रहा हैं जो कि शीशे के दरवाजे के अंदर है।

और एक बड़ा सा पोस्टर दिख रहा है।

बहुत सारे बाइक दिख रहे है स्प्लेंडर डुक ई बहुत सारे है।

इस चित्र में बहुत सारे घड़े दिख रहे हैं जोकि एक पर दो रखे हुए हैं।

सुरे सजाया हुआ है।

इधर कुछ रॉडे दिख रहे हैं।

वाइट रंग से पेंट किया हुआ है बहुत सारे लोहे लगे हुए हैं।

दो आदमीन दिख रहे हैं और नीचे कुछ बॉक्स रखे हुवे हैं।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

कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और अलमारी भी दिख रहे हैं।

कॉर्पियो फोर व्हीलर बहुत सारे हैं।

एक पेड़ दिख रहा है जोकि बहुत ही हरा भरा है।

ऊपर में रेड रंग की पेंट किया हुआ है।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

बहुत सारी माला पहनाया हुआ है।

इस चित्र में एक बहुत ही बड़ा घर दिख रहा है जिसके गोले गोले बाउंड्री मारा हुआ है।

इस चित्र में एक बाइक दिख रहा हैं जो कि रॉयल एक्सचेंज हैं और स्टील लगा हुआ है।

कुछ थम्स अप और गिलासें रखे हुए हैं।

बहुत सारे गाड़ियां लगी हुई हैं और एक फील्ड दिख रहा है।

इस चित्र में बहुत सारे ढोलक दिख रहा है जो कि एक आदमी बैठ कर बजा रहा है।

ऊपर में बहुत सारे बैलून चिपकाए हुए हैं जो कि दो तीन रंग के है।